यहाँ एक जगह पे बहुत सारी मच्छी मरी हुई मछलियाँ दिखाई दे रही है।

उसके उपर बहुत सारी मछलियाँ अलग-अलग दिखाई दे रहीं हैं जो की जिंदा है या मरी पता नहीं।

ये एक पत्थर के बने खंबे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें की अंदर दो डंकी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक नल का पानी पीने का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें से एक आदमी पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे छोटे-छोटे झंडे टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं लाइट की केबल बहुत सारी दिखाई दे रही हैं नीचे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।